कॉटन पड़ा हुआ है और दो चेयर्स पड़ी हैं सामने की तरफ एक टेबल लगा हुआ है।

दीवार हैं और ऊपर की तरफ कुछ घास पौधे झाड़ियां ऊखी हुईं हैं और सफेद कलर का कुछ दिखाई दे रहा है।

ये कुछ अ-हमें स्पीकर जैसा दिखाई दे रहे है किसी डीजे कंपनी के डीजे स्पीकर है ये।

और यहां ऊपर की तरफ जो गोल-गोल छोटे-छोटे स्पीकर हैं इन पे लाइट्स वगैरह दिखाई देती हैं रात के टाइम।

ये कुछ अ शॉप दिखाई दे रही है जिसके बाहर की तरफ कुछ दरवाजे नजर आ रहे हैं एक चेयर पड़ी हुई नजर आ रही है ऊपर की तरफ।

ब्लू और अ-ऑरेंज कलर में पेंट किया हुआ--

ये कुछ उम्म गुरु नानक पब्लिक स्कूल टाइप कॉलेज टाइप दिखाई दे रहा है कुछ कॉलेज --

ई तस्वीरे हैं जहां पे हमें गेट आं व दिखाई दे रहा है और साइड के तरफ एक ओपन छोटा--

यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है सामने की तरफ तीन रूम दिखाई दे रहे--

ये कुछ अ अ किसी ए म रेडीमेड कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है यहां पे स --

रेडीमेड वगैरा बाहर स्टैचू पे लगी हुई है कलरफुल जिसमें पैरोट कलर ऑरेंज और वाइट कलर की हैं ।

अ-ए कांच के-ए स्लैब के ऊपर बहुत सारी सिनरियां और मूर्तियां रखी गई हैं ।

इधर उधर लोगों भाग रहे हैं साथ में ये सामने की तरफ बहोत सारे पेड़ के नीचे लोग इकट्ठे है।--

वाइट पे खुल्ले ग्राउंड में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है जिसमें ग्रे कलर और वाइट कलर और सिल्वर कलर की गाड़ियां यहां पे खड़ी हुई है।

यहां पे हमें कुछ अं एक साइड पे कुछ अं कच्चे घर टाइप दिखाई दे रहा है एक तरफ से--

पेड़ दिखाई दे रहे है सामने से एक सड़क गुजर रही है और खाली एरिया यहां पे कोई दिखाई नहीं--

ये कुछ हमें अह कुछ मैहेल जैसे दिखाई दे रहा है कुछ--

कुछ चेयर्स लगे हैं कुछ बच्चे खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और भीड़--

यहां पे कुछ हमें किसी होटल का अह किचन --

ए-ए सलून वाले भैया का नंबर दिखाई दे रहा है।

उनमें हमे एक उम्म कबूतर दिखाई दे रहा है जो कि जमीन के ऊपर घास के ऊपर चल रहा है।

आसपास में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है घास पड़े हैं कुछ--

यहां एरिया इस एरिया में हमें कुछ--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

एसबीआई बैंक का सामने हमें बोल दिखाई दे रहा है कुछ व्हीकल यहां पे खड़े हुए हैं एक व्हीकल के हेलमेट भी पड़ा हुआ है।

और दो आदमी यहां पे खड़े हुए है सामने की तरफ एक सीनरी दिखाई दे री है और एक चेयर पड़ी हुई--

ये हमें सामने एलीफेंट के कुछ सीनरी दिखाई दे रही है जिसके बीच में कुछ--

कुछ शॉप्स नजर आ रही है जो कि अ-ऑफ है और इस-इसके--